सभी अलमारीयों में खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है।

उसके बगल में एक रेड कलर का और फ्लावर लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे रॉड के पिलर दिख रहे हैं।

कमरे में बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई है।

इसके सीलिंग में एक ब्लैक कलर का फैन लगा हुआ है।

यह एक बड़े से बिल्डिंग का दृश्य।

इसमें बहुत सारे कांच भी लगे हुए हैं।

बिल्डिंग में एक के ऊपर एक बक्सा सजा कर रखा हुआ है।

कुछ महिलाएं पुरुष बाहर खड़े हैं।

यह एक किराने दुकान का दृश्य है।

यहां पर एक ब्राउन कलर का गेट भी बना हुआ है।

बाल्टियों के ऊपर कार्टून के डब्बे भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे वस्तुएं रखे हुए हैं।

अंदर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

ऊपर में पर्पल और येलो कलर का कपड़ा से सजा हुआ है।

साइड साइड में ब्लू कलर और वाइट कलर के कपड़ा की मदद से सजा हुआ है।

नीचे ग्रीन कलर के कारपेट बिछी हुई है।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है।

इस दृश्य में दो बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के आगे बहोत सारे शो प्लांट लगे हुए हैं।

दुकान के बगल में एक और दुकान है।

कुछ पेड़ सुखा हैं तो कुछ हरियाली है।

यहां पे बहोत सारे व्हाइट कलर के कार्टून में भी कुछ समाने रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य--

यह एक बड़े से हॉल का दृश्य--

रोड पर छह लड़के खड़े हैं उनके हाथ में फेस पे और ड्रेस पे गुलाल लगा हुआ है।

इसका मेन गेट ब्राउन कलर का है वह लोहे का है।

इसके सीलिंग में ब्लैक कलर के पंख लटके हुए हैं।

यहां पे एक और बगल में दुकानें हैं उसमें शटर लगा हुआ है।

एक गमलों में पिंक कलर का रोज भी लगा हुआ है।